ये तस्वीर एक कमरे की है।

छत पर नीले गुलाबी और सफेद रंग के ढेर सारे गुब्बारे सजाए गए है।

इस तस्वीर में बहोत सारे कार्टन और बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कई लोग एक पहाड़ी या चट्टानी स्थान पर जमा हैं।

जिसके अंदर पैट्रियोटिज्म का प्रदर्शन किया जा रहा है।

टेज के ऊपर भी काफी लोग चढ़े है।

यह फोटो एक कपड़े की दुकान की है।

जैकेट टीशर्ट पैंट और अन्य कपड़े बड़े करीने से टंगे हुए हैं।

जिसकी दीवार लाल रंग की है और उसकी सीलिंग --

यह दृश्य बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण रहा है।

आस पास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

बाय एक बाइक भी खड़ी है उसके पीछे साइन बोर्ड एक पैंपलेट है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।